टेक्नो पोवा जो कि एक अच्छी बात है और सभी मॉडल्स भी यहां पास रखा गया है?

सामने एक स्टेट दिखाई दे रहा है और चारों साइड हरियाली भी दिखाई दे रही हैं और--

जो कि अच्छी बात है आगे के लिए--

यहां पास कुछ छोटे छोटे ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं।

ये बहुत ही अच्छा नृत्य कर रहे हैं और ये--

हमें यहां पास बहोत ही बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पास बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं।